जो कर्नाटका का लग रहा है जिस होटल के बाहर दो व्यक्ति होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं।

किचन में कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरा है और एक बाल्टी भी नजर आ रही है।

इसके अंदर एक लड़की ने भारत का झंडा हाथ मे पकड़ा हुआ है।

इस शोरूम में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं जो आपस में बात कर रहे हैं।

कुछ पेड़ बड़े तो कुछ पेड़े छोटे नज़र आ रहे है इन पेड़ो के नीचे --